लड़का मास्क पहेना हुआ हैं जो हाथ में कॉपी लिए जा रहा हैं मोटर साइकिल हैं हीरो होंडा है बहुत सारेव्यक्ति सादा कमीज पहनकर है बहुत सारी लड़कियां सलवार सूट पहनी हुई है।

पंद्रह रुपया वाला पेन है पाँच रुपया वाला पेन है उसके बाद इसमें कुछ हीरो के फोटो हैं रितिक रौशन के फोटो है।